सुंदर सा गेट बना हुआ है जो कि लेह लोहे का है आस-पास में पहाड़िया है।

आसपास में बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी बने हुए है जो की हरेभरे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोहे के मशिन लगे हुए हैं।

बिजलियों के गुजरने के लिए कुछ खंबे भी लगाये गए है यहाँ पर पीछे की और भी और अलग - अलग बिल्डिंगे भी बनी हुई है।

जिसके साइड में एक अच.डी.एफ.सी. बैंक का ब्रांच भी है।

यहाँ पे हरे - हरे पेड़ भी लगे हुए है जो की बहुत बड़े बड़े है।

यहाँ पर क्रिस्चियनो का कुछ प्रोग्राम मनाया जा रहा है।

यहाँ बहुत से अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस पहन के कुछ लोग आए हुए है।

इस स्टेचू के पास पोहोचने के लिए सीढ़िया भी बनाई गई हैयहाँ आसपास में बोहोत सारे दुसरे घर भी बने हुए है।

यहाँ पर बोहोत बड़े - बड़े पत्थरो के बिच में एक छोटासा तालाब बना हुआ है।

यहाँ पे ऊपर चढने के लिए सीढ़ियाॅं भी बनाई गई है।

यहाँ पर एक अ बलून से बनी हुई बोट रखी हुई है जिसके पास में एक बास के बम्बू रखे गए है।

यहाँ पर एक शॉप के सामने बोहोत से वर्करो द्वारा काम किया जा रहा है। ।

यहाँ आस-पास में हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए हैं सामने की ओर हरी-हरी घासें भी दिखाई दे रही है।